और आसपास कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं कुछ पेड़-पौधे हरे रंग के और कुछ सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

टेंट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ रंग बिरंगी लाइटे जलती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ आदमी इधर-उधर आते-जाते दिखाई दे रहे हैं।

यह चित्र किसी स्कूल का है जो के सामने एक बहुत बड़ा विद्यालय दिखाई दे रहा है जिसका नाम राजकीय महिला विद्यालय बदायूं है गेट के बाहर कुछ महिलाएं खड़ी हुई हैं और कुछ मोटरसाइकिल भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह चित्र किसी गाड़ी ठीक करने वाले के वर्कशॉप का है जोकि सामने एक गाड़ी के कुछ टायर खोले हुए नजर आ रहे हैं और आसपास कुछ मशीने और कुछ औजार भी नजर आ रहे हैं।